जो की काले कलर के है।

और भोले नाथ जी को चढ़ रहा है और हमे एक स्टूल भी--

जैसा की हमे यहाँ दिखाई दे रहा है की ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर हमे बहुत सारी--

और उसी के पास में हमे बाउंड्री भी दिखाई दे रही है और उसके आस--

फ्रूट रखे हुए दिखाई दे रहे है जोकि अलग- अलग तर--

और इस दरवज़्ज़े के अंदर से एक लैडी झाक रही है ।

जैसा की हमे यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा है की यह एक हॉल है अ नह और ये होटल भी है।

कुश खड़े है और एक जना वहाँ गेट लगा रहा है और--

पलंग दिखाई दे रहा है और इसके आस-पास हमे बहुत सारी मशीने--

हॉल दिखा रहा है और यहाँ पर हमे गाड़ी खुली हुई दिख रही है और यहाँ पर हमे

जैसा की हमे यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक आंगन हैऔर इस आंगन में हमे एक गाय दिखाई दे रही है।

जैसा की हमे यहाँ दिख रहा है की यह एक हॉल है और इस हॉल में एक स्टोर लगा हुआ है।

क्से में अलग अलग हमें सामान मिलेगा और हमें ऊपर की ओर गोल्ड भी दिखाई दे रहें हैं।